वहां बहोत सारी चूड़ियां खुले ही रखे गए हैं। वहां बहोत सारी अच्छी-अच्छी चूड़ियां नीचे गिरी हुई--

फल की और कोई सब्जी के ठेले है और उन्हीं पीछे में दुकान र खड़ी है बहोत सारे --

यहां पर एक मंदिर है और इस मंदिर में कुछ मूर्ति को ले जाया जा रहा है।